बाइक खड़ी हुई है। साइकिल खड़ी है। एक थैला खड़ा हुआ है। यहां पर कुछ जेंट्स खड़े हैं। कुछ लेडीज खड़ी हुई हैं।

यहां पे एक हॉल है। हॉल में बहोत सारी बुक्स रखी हुई हैं और यहां पे एक टीवी लगी हुई है।

इसके ऊपर भी बहोत सारा सामान रखा है। अंदर भी बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

यहाँ पे एक गेट बना हुआ है। यहाँ पे एक रोड है। रोड पे से गाड़ियाँ आ रही हैं। जा रही हैं।

यहाँ पे रोड है। रोड पर कुछ कार आ रही हैं। कुछ कार जा रही हैं।

यहाँ पे लिखा है अभिनव प्रज्ञा महाविधालय । ये कोई महाविद्यालय है।

बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं नीचे और नीचे एक गांव टाइप का है घर दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे एक अंकल बैठी हैं स्टूल पे एक आंटी बैठी है एक दीदी बैठी हुई है।

यहां पर तीन बस है। यहां पर बहोत सारे लोग घूम रहे हैं। कुछ जेंट्स हैं। कुछ लड़के हैं।

और यहाँ पे गार्डन में दोनों साइड बोहोत सारे पेड़ लगे हुए है। ग्रीन दूबा लगी हुई है। बीच मे से रास्ता है।

यहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं। आसमान दिखाई दे रहा --

यहाँ अंदर गले में बहोत सारे फूल डले हुए है और यहाँ पे एक लड़का दिखाई दे रहा है।